यह बिल्डिंग काफी बड़ा है। इस बिल्डिंग पर बहुत से आदमी बैठे हुए है। यहाँ कुछ आदमी खड़े भी है। इस बिल्डिंग के किनारे काफी मेले जैसा भीड़ है। यहाँ पर एक छोटा सा घर है। इसके ऊपर भी आदमी चढ़ा हुआ है। यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है।